टेंट लगा हुआ है जिसका रंग नीला है ऊपर लाइटें लगी हुई है जिनका रंग रंग-बिरंगा है और मालाएँ लगी हुई हैं।

यहाँ एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहाँ एक आदमी खड़ा नज़र आ रहा है उसने वाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है उसके गाड़ी का रंग कत्थायी है।

पेड़ का रंग हरा नज़र आ रहा है पानी में कुछ गजी सी दिखाई दे रही है।

पीछे लोहै के किले नजर आ रहै हैं जिनका रंग भूरा है ऊपर ब्लू नजर आ रहै हैं।

यहाँ एक मैदान है मैदान में सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग का रंग सफेद है ऊपर कुछ हरा रंग नज़र आ रहा है जिस--

यहाँ एक ऊचा सा पहाड़ नज़र आ रहा पहाड़ का रंग काला दिख--

यहाँ एक शॉप है जहाँ पर बुक्स दिखाई दे रही है नीचे जमीन नजर आ रही है जमीन का रंग भूरा है एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट कलर का टी -शर्ट --

नीले रंग से बैंक का नाम लिखा हुआ है और हरे रंग से बैंक का नाम लिखा हुआ है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।